जहां लोग बैठ सकते हैं यहां पर जो लाइटिंग की गई है वो बहोत ज्यादा खूबसूरत तथा रंग रंगीली है।

यह फोटो किसी शादी की लग रही है।

जड़ी बुटियां भी रखी गयी है यहाँ पर जो पीछे नजारा है वो भी अच्छा है।

यहां पर पीछे मिट्टी भी बहोत खोदी गई है जिसको पहाड़ टाइप में जचया गया है।

पीछे भी बहोत सारे घर है जो नए नए बने हुए है उन पर अभी पेंट और नहीं किया गया यहां काम कर रहे है लोग --

जो बालकनी में बनाया गया है यहां पर अभी पार्टी हुई लग रहा है या फिर ये किसी कैफे की फोटो हो सकती है।

यहां पर बाहर ढाबे पर कांच की टेबिल लगाई गई है बहोत सारी और उन्ही टेबल्स के पास बहोत ही कुर्सियां लगाई गई हैं।

यह फोटो क्रिकेट स्टेडियम की फोटो है यहां पर विकेट लगे हुए हैं।

पूरे स्टेडियम में घास हो रखी है यह स्टेडियम बहुत ही बड़ा तथा बहुत ही अच्छा लग रहा है विकेट भी अच्छा है।

यहां स्टेज पर अभी कोई नहीं है यह शादी के बाद की फोटो लग रही है जहां लोग हैं ओ डेकोरेशन को वापस --

यहां छोटू ऑटोमोबाइल वर्कर की शॉप है यहां पर अभी रात हो रखी है यहां कुछ वर्कर्स है जोकि काम कर रहे है।